यहाँ पे एक रूम है। रूम में बहोत सारे चैर है। एक उम अलमारी है बहोत सारे उसमे बहोत सारे सामान रखे हुए हैं।

यहाँ पे एक महल जैसा नज़र आ रहा हैं एक आदमी बेग लिए

यहाँ पे एक कबीर जी का स्टेचू बना हुआ है साइड में दीवार पर और भी पिक्चर्स बने गए है रंग-बिरंगे पिक्चर देखे जा रहे हैं।

यहाँ मेन रोड है मेन रोड बहोत से गाड़ी चल रही है दोनों और रोडो के बीच एक उम पेड़ हैं।